इस इमेज में हमें एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

इस इमेज में हमें एक फूलों की दुकान नजर आ रही है।

और इनका कलर है रेड येलो ।

यहां पे कई सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

और उसके पीछे एक झोपड़ी भी है।

और ऊपर वाले माले में रेड कलर --

जिसके ऊपर एक रेड कलर का--

टेंट का वाइट है और लाइट पिंक है।

इस इमेज में हमें यहां पे एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

सामने एक घर बना हुआ है जिसका कलर व्हाइट और कत्थाई है और यहां पे एक नाव भी खड़ी--

इस इमेज में हमें यहां पे एक पार्क नजर आ रहा है।

और यहां पे एक झूला है जो बहुत ही सारे लोग झूल रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे रंग-बिरंगे--

बहुत अच्छे-अच्छे टॉय टंगे हुए हैं।

इस इमेज में हमें एक मैदान नजर आ रहा है।

और अंदर लाइट भी लगी हुई हैं।

स्विमिंग पूल के अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग भी लगी हुई है।

और पीछे लाइट का बड़ा वाला टावर है।

इस इमेज में हमें यहां पर एक--

यहां पर बहुत सारे बच्चे डांस कर रहे हैं।

व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए--

जिसके बाहर ब्लू कलर का एक पेट्रोल पंप का--

और यहां शर्ट के नीचे एक झूला भी है।

आलू भुजिया पाइनएप्पल पपाया --

इस इमेज में हमें यहां पर एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

यहां पे एक पर्सन पिंक और किले कलर की टी-शर्ट और लोवर पहना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे लोग--